दुकानदार भी बैठा हुआ है एक कस्टमर भी आया हुआ है।

दुकानदार के पीछे की ओर ज्वेलरी रखा हुआ है।

कुछ आदमी लोग लाइन पर खड़े हुए हैं और कुछ आदमी निकलते हुए--

स्टेज के आगे की ओर कुछ आदमी बैठे हुए है जोकि चेयर बहोत अच्छा से सजाया गया है।

ऊपर की ओर एक बड़ा सा बॉक्स भी बना हुआ है।

ढेर सारे फूल गमले में रखा हुआ है।

पीछे की और भी खाना खा रहे हैं।

दुकान के साइड साइड में भी दो बोर्ड रखा हुआ है।

इस दुकान में दीपावली के टाइम यूज़ होने वाले सामान को सजा के रखा हुआ है।

एक बेड भी रखा हुआ है।

डेम के नीचे से पानी बह रहा है।

आदमी के आगे और पीछे दो बड़े गांच है।

रूम के अंदर चार बच्चे पढ़ रहे हैं।

घर के साइड में गाड़ी या लाइन बाई लाइन से रखा हुआ है।

इस चित्रपट तस्वीर में हमें एक इमारत दिखाई दे रहा है।

पेड़ भी उगे हुए है।

सब आदमी अपने अपने काम कर रहे हैं।

हाथी के पीछे की ओर केरे केरा का गांछ का खंभा गिरा हुआ है।

इस तस्वीर में हमे एक घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक मोटरसाइकल का दुकान व गैरेज देखने को मिल रहा है।

पहाड़ भी दिख रहे हैं।

लोहे की रॉड भी लगा हुआ है।

इस पहाड़ में पांच आदमियां चढ़ रहे हैं।

राइट साइड में घास भी है और इस पत्थर के पहाड़ में सुखा घास भी है।

इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

साइड में लाल रंग का पेंडल भी किया हुआ है।

इस तस्वीर में एक बहोत ही बड़ा सा एरोप्लेन दिखाया जा रहा है।

एक आदमी यहीं से चलकर जा रहे वो भी दिखाया जा रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक जिम शोरूम दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर एक लड़की जो की डंबल उठा रहा है।

इस दुकान में एक बॉक्स भी रखा हुआ है जहां पर फल बहोत ही अच्छे से सजाया हुआ है।

जो कि माइक में कुछ बोलते हुए और बाएं ओर एक इंसान चेयर पर बैठा हुआ है।